यहां पर कुछ गाड़ियां और बाइक दिखाई दे रहे हैं और--

दुकान दिखाई दे रही है जिसपे बहोत बड़ा बैनर दिखाई दे रहा है जिसमें दयाल बूट हाउस --

यह पे एक आदमी पानी पिता हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ नायें दिखाई दे रहे हैं।

रहे हे नाइट व्यू दिखाई दे रहा है।

एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है।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

किन टैटू की दुकान दिखाई दे रही हैं यहां पर--

है और एक लैंप दिखाई दे रहा है दीवारों पर--

फ्रेम चिपकाई हुई दिखाई दे रही--

दे रहा है। इसके सामने एक रेड कलर की चेयर दिखाई दे रही है।